पर एक बड़ा सा ग्राउंड भी है।

जैसा कि में देख पा रही हूँ दिन का समय है और सामने कुछ दुकाने हैं और एक बैंक है जिसका नाम कैनरा बैंक है।

खड़े है और बहुत सारे लोंग बैठे हुए भी दिख रहे है ।

जो देखने में मंदिर की तरह लग रहा है और इसका कलर पिंक है और एक का कलर व्हाइट है और उसमें --

और यहां देखने में मछली बाजार की तरह लग रहा है और यहां पे बहुत छोटे छोटे लाइट्स भी लगी हुई हैं।

बिजली का पोल भी है जिसमे बहुत सारे तार दिख रहे है।